जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते है कि यहां पर बहोत बड़ी मात्रा में--

लगी हुई हैं जिसमे लोग जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं।

पाटलिपुत्रा स्पीच और हियरिंग क्लिक भी बना हुआ है जोकि बहोत ही--

जैसा कि आप इस चित्र में--

जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं।